जिस दुकान के अंदर बहुत अच्छे अच्छे कपड़े रखे हुए हैं।

जिसकी की ओर एक ट्रेले खड़ी हुई है।

यह एक ऑफिस है और इस ऑफिस के अंदर एक काउंटर भी रखा हुआ है।

यह एक पार्क है और इस पार्क में बहुत सारे आदमी भी बैठे हुए हैं।

और इस जिम में एक ए_सी और कुछ लाइटे भी लगी हुई है।

और इस एजेंसी के छत पर एक पंखा भी लगा हुआ है।

और इस वर्कशॉप के अंदर कुछ आदमी भी खड़े हैं।

यह एक हॉस्टल है इस हॉस्टल के छज्जे पे लोहे की ग्रिल लगी हुई है।

इसकी साइड में एक पेड़ भी खड़ा हुआ है।

और छत में पंखे भी लगे हुए हैं।

उस साइड में कुछ दुकानें भी है।

और शेड में एक अदमी बाइक पर बैठा हुआ है।

और ऊपर की साइड बहुत अच्छा सूर्य दिखाई दे रहा है।

इसके बगल में कुछ सीढ़ियां भी खड़ी हुई है।

और साइड में बहुत सुंदर पेड़ भी खड़े हुए हैं।